कार्यालय के बगल में कुछ गाड़ियां रखी हुई हैं।

यह कोई मारुति कार का वर्कशॉप है जहां पर गाड़ियों की स सर्विस होती है।

अंदर उं कुछ टेबलें डली हुई हैं और यहां पर उं कुछ एक कुर्सियां भी डली हुई हैं।

यहां मुझे एक मेला दिखाई दे रहा है जो कि यहां पर लगता है जैसे कि कोई गाना गा रहा हो।

यहां पर एक एक या एक से अधिक कुछ पेड़ भी है और यहां पर कुछ कचरा भी डला हुआ है।

अंदर कुर्सियां भी रखी हुई हैं और बाहर की तरफ कुछ पिला टाइप का है।

यहां पर एक व्हाइट बोर्ड भी लगा हुआ है जोकि लिखने के काम में आता है।

मुझे यहां एक मंदिर दिखाई दे रहा है जिसमें तीन मूर्तियां हैं। एक बड़ी मूर्ति है और दो छोटी मूर्ति है।

मंदिर के सामने कुछ स पत्थर लगे हुए है।